एक नीचे है एक ऊपर बैठा है ये बॉटम से कुछ बना हुआ है ये लोग ओकुछ काम कर रहे हैं।

ये देखिए यहां पर बहुत सारे--

ये देखिए यहां पर मकान बन रहा है बहुत सारी बल्लियां छत पर लगी हुई है।

और सर्विस का वायर भीदिखाई दे रहा है।

ये देखिए ये जाली का बड़ा सा हाउस बना हुआ है यहां पर दो काली बकरियां है इधर साइड में झंडा लगा हुआ है ।

ये देखिए ये दुकान है बालाजा--

ये यहां से बस टिकट शायद दी जाती है यह आदमी खड़ा हुआ है।

ये देखिए यह नदी नजर आ रही है।

यह कुछ मंदिर जैसा बना हुआ है पत्थर में इसके पीछे दीवार है दरख्त है पाटी पे कुछ लिखा हुआ है।

ये देखिए यहां पर बस खड़ी है।

ये देखिएये कितना खूबसूरत--

ये देखिए ये दुकान नजर आ रही है यहां पर--

ये देखिए यहां पर वाइट कलर की मशीन रखी हुई है नीचे पिंक कलर की बोतल पड़ी हुई है।

ये देखिए यहां पर बहुत सारे--

पर्दे लगे हुए हैं लाइटिंग है सामने--

यह देखिए यहां पर दो चेयर रखी हुई है एक सोफा रखा हुआ है उस पर भी बहुत अच्छा--

इस रूम में बहुत सारे लोग--

ऊपर फूल भी रखे हुए हैं ।

ये देखिए ये मकान कितनी खूबसूरती से बना हुआ है लाइटिंग से सजावट की हुई है।

ये देखिए एक आदमी के हाथ में मोबाइल है।

यह शायद सेल्फी ले रहा है इसकेआ पीछे भी कोई खड़ा हुआ है।

ये देखिए यहां पर शायद फंक्शन है गेट पर बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है।

और ये ऑफिस बना हुआ है यहां एक मैन भी खड़ा है--

ये देखिए ये शादी का हॉल है दो आदमी चेयर पर बैठे हुए हैं इधर साइड में भी एक आदमी चेयर पर बैठा है।

गेट पर से एक गाड़ी जा रही है साइड में पांच छह साइकिल खड़ी है।

जो जग में बम के लिए गाड़ी इस्तेमाल की जाती है वह रखी हुई है इसके आसपास दरख्त है।

बेड है बेड पे गादी रखी हुई है तीन तखियां रखी हुई है लाईट जल रही है।

ये देखिए ये कपड़े की दुकान है सामने एक--

ये देखिए यहां पर बहुत सारे टेबल कुर्सी रखे हुए हैं लाइटिंग लगी हुई है दरक्त है।

ऐसी चीज रखी हुई और दूर-दूर पर दरख़्त नजर आ रहा है।

यह देखिए यहां पर पेट्रोल गाड़ी में भरा जाता है।

नई कार खड़ी हुई हैऔर दो-तीन मशीनें भी नजर आ रही है।

देखिए यह इमारत कितनी बड़ी दिख रही है।

इधर बहुत ही खूबसूरत घूमने वाला बना है।